इधर एक शॉप है और ये बैंच के ऊपर कुछ सामान रखा है और वाशिंग मशीन्स हैं बहोत सारी--

इधर पे एक ट्रक है जिसके बगल से बहुत सारा धुआ निकल रहा है और इधर पे बहोत सारी पाइप रखी हुई हैं।

जो बहोत अच्छी जगह पर है यहां पर कुछ--

ये एक सनसेट व्यू है जहां पास एक आदमी खड़ा होकर अपना फोन चला रहा है और ये जमीन बहुत रेत से भरी हुई है।

और इस तरफ बहोत सारे पत्थर भी हैं कुछ पानी में हैं कुछ पानी के बाहर हैं और यहां पास एक हरा मैदान टाईप का भी है।

और एक आदमी अपने हाथ मर कुछ पकड़ा हुआ है और पीछे भी और भी बहोत सारी साइकल है और और भी लोग खड़े हुए हैं।

ये एक किसी का हाथ है जिसने फूल पकड़ा हुआ है और सामने बहोत--

और आसमान दिखाई दे रहा है और बहोत सारे खंबे हैं।

यहां पास बहोत सारे लोग हैं और एक सेंटा क्लॉज भी है और नीचे एक आदमी माइक पकड़ा हुआ है।

और सामने एक रेड कारपीट भी बिछा हुआ है।

और कुछ बच्चियां खेलती हुई भी दिख रही हैं और साइड से कार खड़ी हुई है।

यह पास बहोत सारे बॉक्स बॉक्स ही है।

यहां पास एक लड़का एक सेल्फी ले रहा है और उसके साथ एक और भी बच्चा है और पीछे कांच का शीशा लगा हुआ है।

और यहां पास टावर खंबे भी गड़े हुए हैं।

बहोत सुंदर सुंदर अलग अलग वैराइटीज लाइट है।

और यहां पास पानी के दो ठो कैन भी रखे हैं।

ये एक बहोत सुंदर सा गांव का नजारा है।

कार ट्रक भी जाते दिखाई दे रहे हैं और छोटे छोटे घर बने हुए हैं।

और एक सड़क गई है और कुछ लोग खड़े भी हैं और उसके बगल से बहोत सारी दुकान भी लगी हुई है।

और सब अलमारी में कपड़े टंगे हुए हैं सामने से एक दरवाजा है।

यहां पास एक बहोत बड़ी सी बिल्डिंग है और इसमें बहोत सारी खिड़कियां और दरवाजे लगे हुए हैं।

बहोत सारी सूखी सूखी घास भी दिखाई दे रही है।

और सामने पे कांच का आईना लगा हुआ है।

और पीछे तरफ बहोत बड़े बड़े पहाड़ दिखाई दे रहे हैं।

यहां पास एक बड़ी सी बिल्डिंग दिखाई दे रही है।